दुकान की तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि किसी सैलून के शॉप की तस्वीर दिख रही है।

कलर से पेंट करा हुआ है और एक तस्वीर बनाई हुई दिखाई दे रही है।

ये एक नर्सरी की तस्वीर दिखाई दे रही है जो की किरन --

और नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने की और बहोत सारे छोटे छोटे पोट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक एस_बी_आई के केंद्र की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये एक स्विमिंग पूल की तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर बोहोत सारे आदमी हैं जो स्विमिंग में सीम --

ये एक गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है जोकि एक वाटर पार्क का गार्डन बना हुआ नजर आ रहा है।

जो कुछ आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मोबाइल देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और पास की टेबल पर दो कांच के ग्ला--

बहोत सारी मालाओं से डेकोरेशन करी हुई दिखाई दे रही है और लाइटों से भी डेकोरेशन करी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक सर्विस सेंटर समझ में आ रहा है यहां पर बहोत सारी बाइके के खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बाहर की ओर कूलर फ्रिज रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और तीन ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है।